एक बस है इस बस पर बहुत सारे लोक पर बैठकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं और बस के ऊपर--

यहाँ पे सुबह बहुत सारे भीड़ रहते है बस पर के ऊपर भी बहुत लोग बैठ कर जाते हैं।

यह एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन किया गया हुआ है।

--और यह एक कंकाल जैसा है लेकिन यह है कि --

और सबको एक टीम में डिवाइडेड कर दिया गया है।

यहाँ पर बहुत अच्छा सा डेकरैशन किया गया है।

यहाँ पर दो कलर में बैलून है एक सफेद कलर में है दूसरा --

इंच जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

वह मेरा इंटरव्यू ले रहे है।

यह अपने लेटकर वर्कआउट कर रहा है।

बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसे--

और एक अच्छा-अच्छा इंसान बनते हैं कुछ नौकरी लेते हैं।

धान को भरने से सीधे मतलब जिसको हमको खट्टा में नाडा बोलते हैं।

यहाँ एक प्लेट में है चिकन है बिरयानी हैं चिकन बिरयानी है।

सिंचाई करने के लिए काम आता है गरीब किसानों की मदद करता है पानी जो होता है ओ उसको हम एक माँ की तरह से मानते हैं।

और कुछ उसे बेच करके पैसे भी कमाते हैं यह सब पाने के बदौलत ही होता हैं।

संघर्ष स्वागत है औरंगाबाद में स्थित हैं।

बहुत जन आए हुए है और यह फूल बहुत ही प्यारे -प्यारे लग रहे हैं।

जो इस पर ट्रेन चलती है और ट्रेन बहुत स्पीड चलती है।

कान में आकर कुछ बोलेंगे ओ बात मेरे तक अवश्य पहुचेगी --

अऊ इस मॉल के अंदर बहुत सारे कपड़े आपको मिल जाएंगे यहाँ तरह-तरह के चीजे मिल जाएंगे जो--

औरों दुकान की तुलना में मांगे होते हैं।

पार्क जो है बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर बहुत ही अद्भुत सा दिख रहा है।

जो पेड़ की खासियत थी ब्यूटीफुल दिखता है यह पेड़--

और लोग इसे पहनते हैं और अपने ठंडा से बचते हैं।

गणेश भगवान लक्ष्मी मईया और दो देवियो की पूजा की जा रही है।

यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन आते हैं अपनी पूजा करते हैं अपनी आराधना करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं।